तरह से है जिसमें लाल पीले हरे और--

और मुंडी मे बहुत और तरह के लोग भी दिखाई दे रहे है।

दस बारह कुर्सियां गली हुई है ऐसा लग रहा है कोई क्लास है और दिन का समय है लीला बोर्ड है।

अनेक अनेक तरह की पोस्टर लगी हुई हैं।

जिसमें से बगीचा हैं बड़े बड़े पेड़ पौधे भी हैं बाहर की तरफ आदमी भी खड़े हैं।

जोकि वाइट कलर की है।

एक लड़का दिखाई दे रहा है जोकि पहाड़ो के बीच--

कंपनियों के अंदर कुछ ऐसा है।

और यह जिम जैसा योगा करण का स्थान लग रहा है।

एक ऑफिस जैसा दिखाई दे रहा है।

छोटे छोटे पेड़ पौधे और लाइटिंग सीई हुई है लाइट पर कोई--

एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

रुम एक एक रूम जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें एक फैन --

लाइटिंग भी दिखाई दे रही है।

एक सकूल जैसा दिखाई दे रहा है।

एक होटल जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें--